वायर दिखाई दे रहा हैं फ्रिज दिखाई दे रहा हैं।

चित्र में लकड़ी की बेंच दिखाई दे रही है लोखंड से बनी हुई कुर्सियां दिखाई दे रही है।

लेडिस दिखाई दे रही है पर्स दिखाई दे रहा है।

दीवार दिखाई दे रहा है काले रंग की टॉकी दिखाई दे रही है।

बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रहे हैं सजावटी फूल दिखाई दे रहा है।

पंखा दिखाई दे रहा है ए_सी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे पानी का फिल्टर दिखाई दे रहा है।

लाइट दिखाई दे रही है शिशा दिखाई दे रहा है।

ए_सी पंखा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारी मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही है।

हमें रखा कैलेंडर दिखाई दे रहा है।

बोरे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ भरा हुआ है।

एक लकडे की छोटी सी स्टूल दिखाई दे रहा है।

सफेद रंग का टेंट दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में पलंग दिखाई दे रहा हैं।

पर्दा दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक सोल एंड वॉटर मैनेजमेंट का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

शेल्फ के अंदर कुछ सामान रखा दिखाई दे रहा है।

बीच में लेटने के लिए पलंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

बड्डे के कुछ सामान दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर में एक मस्जिद जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

जैसे मिठाइयां नमकीन बेफर लाइट ये सब दिखाई दे रहा है।

ऊपर बॉक्स रखा दिखाई दे रहा है।

ए_सी दिखाई दे रही है लाइट दिखाई दे रही है।

कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रहे है सेल्फ दिखाई दे रही है।

लाइटथ और पंखा दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में बहुत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सूटकेस जैसे।

मिठाइयां या चॉकलेट पेटी पैक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारी गाय दिखाई दे रही है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड पर स्टैंडर्ड का लोगो लिखा दिखाई दे रहा है।